इन दोनों दुकानों के सामने शटर लगे हुए हैं।

पानी बहुत साफ नजर आ रहा है साथ में ही बैठने के लिए बहुत ही सुंदर जगह है जो कि पीले पर्दों से डेकोरेटेड है।

यहां पर साथ में एक पॉट नजर आ रहा है व एक दिया भी जलता हुआ नजर आ रहा है।

अंदर मुझे भगवानों की तस्वीर दिखाई दे रही है।

यह तस्वीर किसी शो की नजर आ रही है यहां पर काले कोट पैंट पहने बहुत सारे आदमी नजर आ रहे हैं।

एक गार्डन की नजर आ रही है जहां पर नीले ड्राम में पानी भरा जा रहा है।

फूल पत बहोत सारे पत्ते भी नजर आ रहे हैं झील का पानी बिल्कुल सफेद है।

की की तस्वीर नजर है आ रही है काठ मंडी नियर गवर्नमेंट गर्ल स्कूल --

यहां पर ऊपर रंग बिरंगी सूटकेस दिखाई दे रही हैं।

यह तस्वीर पहाड़ों की नजर आ रही है जहां पे लाल और नीले शर्ट पहने दो अ आ तीन आदमी बैठे नजर आ रहे है।